बोहत खुबसुरत लग रहा है ट्रेन बोहत सुंदर।

शादी का सजावट बहोत अच्छा लग रहा है बहोत सुंदर लग रहा है शादी का सजावट--

कलर भी बहुत खुबसूरत लग रहा है बोहत अच्छा लग रहा है सजावट बोहत ब्यूटीफुल लग रहा है सजावट--

स्विमिंग पूल बोहत अच्छा लग रहा है बोहत खुबसूरत लग रहा है स्विमिंग पूल --

और कलर भी बोहत सुन्दर लग रहा है स्विमिंग पूल का बोहत अच्छा लग रहा है।